इस पिक्चर में हम ये देख पा रहे हैं कि ये एक जिम एरिया है और यहाँ पे एक लड़का जिम कर रहा है। कई सारे जिम इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं।

वो शायद पुल अप कर रहा है और यहाँ पे कई सारे जिम के सामान रखे हुए हैं ।

पिक्चर में हम देख पा रहे है के यहाँ एक छोटी सी शॉप है जिस पे एयरटेल फोर जी वोडाफोन का टैग लगा हुआ है इस दुकान का नाम बुक वर्ल्ड है यहाँ पे दो आदमी खड़े हैं ।

आदमी लेटा हुआ है उनका थेरपी चल रहा है औ यहाँ कोई खेल प्रतियोगिता कर् होते हुए दिख रहा है।

यह पिक्चर हमें किसी फैक्ट्री का दिख रहा है जहाँ पे कई सारे सामान हमें रखे हुए दिख रहे है मोटर व बड़ी बड़ी पाइपे पर यहाँ पर हमें स्टील का रॉड दिख रहा है ।

सामाने रखे हुई है। यहाँं पे वॉश बेसिन हमें दिख रहा है भगवान जी का फोटो टंगा हुए दिख रहा है कुछ कपड़े टंगे दिख रहें हैं।

भरा हुआ छोटा सा तालाब दिख रहा है जिसमें हरे रंग की लाइटे जल रही है कुछ ईटे रखे हुए है पाइप से पानी जा रहा है उसके --

दुकान टाइप का दिख रहा है। यहाँ बैनर में ट्वेंटी फोर इनटू सेवन लिखा हुआ है। यहाँ से सीढ़ियाँ गई हुई हैं सीढ़ियों में साइड से ग्रिल लगा हुआ है।

पिक्चर में हमें एक काफी पुराना मकान देखने को मिल रहा है जो कि कई तरीके से टूट भी गया है और इसके आसपास हमें छोटे-मोटे जंगली पौधे दिख रहे हैं।